तब आदमी योगा कर रहे हैं ये एक मैदान है।

चेयर टेबुल लगा हुआ है और बहुत सारे लाइट भी है और यहां पे एक आदमी खरा है वाइट कलर का--

बोगी रखा हुआ है उसके बगल में चार लड़के हैं और यहां पे पेड़ पौधे हैं और यहां पे कुछ कचड़े फेके हुए हैं।

की आप देख सकते है ये एक मंदिर है पहार के बीच में बना हुआ है अंदर और ऊपर में भगवा रंग का एक--

और बैगनी कलर का है यहां पे कस--

और यहां पे एक सिक्युरिटी गार्ड भी है जो वाइट और ब्लैक कलर का--

टी शट है ब्लैक कलर का पैंट व्हाइट कलर का।

यहां पे आप देख सकते है यहां पे दो मैजिक है।